सारी लड़कियां मास्क लगाई है और इस तस्वीर में बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

जलेबी गोल गोल टेढ़ा मेढ़ा बनाया है कुछ जलेबी टूटा हुआ है जलेबी को व्हाइट ट्रे में रखा गया है।

ट्रे को कड़ाई के ऊपर रखा गया है कड़ाई का कलर ब्लैक हैं।

और इसके चारों तरफ बस पेड़ ही दिखाई दे रहा है।

वंश के बाजू में ग्रे कलर का कारपेट बिछाया गया है उ सोफा अलग अलग कलर में का दिखाया गया है।

यहां पे पीछे में एक पोल लगा हुआ है जिसमें से दो वायर निकल रा है।

एक बहुत बड़ा सा होटल दिखाई दे रहा है। होटल के बाजू में ट्रेन चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह बिल्डिंग का कलर व्हाइट है यहां पर दो मीटर बोर्ड भी दिखाया गया है।

येलो कलर का दिखाई दे रहा है उसके बाहर एक स्कूटी लगा हुआ है ब्लैक कलर का ग्रिल भी लगा हुआ है।

इसमें एक आदमी भी ब्लैक कलर का कपड़ा पहन के खड़ा हुआ है यहाँ पे बोहोत सारा पत्थर दिखाई दे रहा है।

इसके नीचे बहोत सारा पानी भरा हुआ है उसके आगे बहोत सारा पेड़ दिखाई दे रहा है।

एक व्यक्ति टिकट ले रहा है एक व्यक्ति अन्दर जा रहा है यहां पे एक नकली पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

एक असली पेड़ भी दिखाई दे रहा है यहां पे मिट्टी दिखाई दे रहा है।

में यहां पे वाइट कलर का बिल्डिंग दिखाई दे रहे जिसमें अभी काम चल रहा है।

ये बिल्डिंग व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है बिल्डिंग के बाहर बहोत सारा सीमेंट एंड गिट्टी रखा हुआ है।

यहां पे पार्लर दिखाया गया है जिसका विंडो व्हाइट कलर का है।

यहां पे ब्लैक कलर का पर्दा लगा हुआ है बहोत सारा यहां पे पोस्टर लगे हुए हैं।

व्हाइट ब्लैक कलर का एक चेयर भी लगा हुआ है एक टेबल है।

ब्रिज के नीचे बहोत बड़ा तालाब भी दिखाई दे रहा है तलाब के बाजू में बहोत सारा पेड़ दिखाई दे रहा है।

रेस्टोरेंट के अंदर कुछ टेबल रखा हुआ है फ्रिज भी रखा हुआ है।

एक सैलून दिखाई दे रहा है जिसका नाम सैलून अ फैमिली शॉप है।

और बहोत सारा बड़ा सा टी_वी दिखाई दे रहा है यहां पे वाइट कलर का वॉल दिखाई दे रहा है।

व्हाइट कलर का लाइट जल रा है टी_वी का दुकान खुला हुआ है।

तस्वीर में हमें एक आदमी भगवान का आरती करते हुए दिखाई दे रहा है।

उसके आजू बाजू बहुत सारे लाइट्स लगे हुए हैं उसके बाजू में एक पेड़ दिखाई दे रहा है पेड़ के नीचे वाइट कलर के फोर व्हीलर लगा हुआ है।

यहां पे हेयर ड्रायर फ्रिज साउंड बॉक्स सिस्टम मिक्सर मशीन फ्रिज भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे कुछ घास भीं दिखाई दे रहें हैं छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहें हैं पे प्लेन का पंखी घूम रहा है।

यहां पे एक बेकरी का शॉप है इसके ब्लैक कलर का बैनर लगा हुआ है।

रेड कलर के बैलून्स लगे हुए हैं। एक बिल बोर्ड मीटर लगा हुआ है।

दुकान में वाइट कलर का लाइट जल रहा है।

ये घर ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है इसका इसके फर्श पे वाइट कलर का टाइल्स लगा हुआ है।

छत को खोल रहे हैं और अ उनके हाथ में हथोड़ा और छेनी रखा हुआ है।

एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है छोटा सा ऐ शायद दुकान हो सकता है रोड के किनारे पे पौधे लगे हुए हैं।